यहां पे झरना टाइप एक कुआं जैसा झरना हैं बहोत बड़ा।

सामने बहोत सारे बंदे खड़े हुए हमें सामने गाड़ी खड़ी है टेंपू--

टेबल के ऊपर गमले रखे हुए है कटोरा रखा हुआ है।

ऐसे सामने एक जगह पड़ी उसमें रेड सा हो रहा है थोड़ा बदल से सफेद सा हो रहा होगा--

साइड में पानी जा जार लगा हुआ है मंदिर लगा ए_सी लगी ऊपर सीलिंग लाइट लगी हुई हैं।

लाइट्स लगी हुए। एक टेबल वगेरह लगी हुई है। यहां पे बहोत सारे--

जब भी पहने हैं हम पीछे दीवाल है उस पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं हर कलर के।